मैदान के किनारे एक कच्चा रास्ता भी दिख रहा है।

जिनमें एक स्कूटी और दो मोटरसाइकिल दिख रही है।

पराठे में हरी मिर्च धनिया प्याज मसालो का मिश्रण दिख रहा है।

पराठे सफेद कलर की प्लेट में रखे हुए हैं।

माला सफेद और गुलाबी रंग के फूलों से बनी हुई है।

माला के नीचे कुछ और फूल और सामान भी रखा हुआ है।

दुकान के सामने एक पीले रंग की टी शर्ट वाला व्यक्ति दिख रहा है।

वाटर पार्क में लाल पीले नीले हरे रंग के घुमावदार स्लाइड है।

किसी भी बैंक खाते में आधार कार्ड जमा होने पर लेनदेन कर सकते है।

आंगन के चारों तरफ इमारत की दीवारें दिख रही है।